यहाँ पे तीन पुरुष खड़े हुए हैं।

और वह एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का दीप खड़ा हुआ है।

रास्ते के पास में ही छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं।